और यहाँ परस ए.टी.एम. दे रही है। ले गाली एक दूसरे को दे रही है।

बैंक के साथ ए_टी_एम से गुजरता हुआ एक आदमी नजर आ रहा है हाथ में मोबाईल ले कर और एक बच्चा भी खड़ा है वहां पर यहाँ पर वो लाइटइंग वाइटिंग कल बहोत अच्छा --

ये यहाँ पर बुक की दुकान है | यहाँ पर एक आदमी ने मुंह को अपना बांध रखा है उससे और लाइटिंग वायटिंग का बढ़िया प्रबंध है | एक आपस मे बात कर रहे हैं दुकान वाला भी ओर दो--

सवच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाइस में घर घर गीले कूड़े सूखे अलग अलग करत में रखती हूं मैं भी। ये एक मतलब एक जागरूक करने के लिए एक सर्वेक्षण सक्षम दो हजार बाइस में रखा गया है।